दो दिल के शेप की सजावट--

ये एक डांस फ्लोर का दृश्य है जहां पर बहोत सी रंग बिरंगी--

ये किसी कॉम्पीटिशन का दृश्य है जिसमे कुछ बच्चे अपनी--

टमाटर भी है और एक तराजू भी रखा हुआ--

इस चित्र में एक बड़ा सा खेल का मैदान दिखाई--